ये एक मकान का फोटो है जिसमें--

ये एक हॉस्पिटल के रूम की फोटो है जहां पर तीन सिलेंडर है जिनका कलर ब्लैक है।

पेंट हो रहा है और ऊपर लाइट लगी हैं जो येलो कलर की है सामने --

और जो उसके बगल मे दूसरा आदमी है उसने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का पैंट पहन रखा है।

और सामने बाइक लगी है और एक पेड़ है जिसका कलर ग्रीन है।

उस पर ग्रीन कलर की लाइट लगी हैं।

ये एक पेट्रोल पंप का फोटो है।

ऊपर पंखा लगा है जिसका कलर चॉकलेटी है और यहां पर लाइट लगी है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक पार्क का नजारा है जहां पर बहुत सारे मकान बने हैं जिनका कलर --

कॉफी और स्लेटी कलर का है और यहां पर दो लाइट के खंभे हैं जिनका कलर --

ऊपर एक वाइट कलर की ए_सी लगी है।

हल्के स्लेटी और वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है उसके हाथ में व्हाइट कलर का पलेस्तर हो रखा है और सामने एक लड़का --

बहोत सारे लोग खड़े हुए हैं और सामने एक बिल्डिंग है जिसका कलर रेड और --

हल्का सा ब्लैक है और सामने चेयर है।

ये एक पार्क का नजारा है जहां पर बच्चों के खेलने के लिए झूला लगा है जिसका कलर रेड है।

बैग है जोकि कॉफी कलर के हैं यहां पर बहोत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है।

होटल के नजारे की इमेज है जहां पर बहुत सारे पेड़ हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं।

और सामने टेबल और कुर्सी लगी हैं कुर्सी का कलर ब्लैक है।